मन्दिर के बाहर एक फूलों की माला लगी हुई नजर आ रही है जो कि येल्लो कलर की है जो कि नकली फूलों की दिखाई दे रही है।

--है और साइड मे भी दो पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हे यहाँ पर एक आंटी बैठी हुई नजर आ रही हे जो कि खंभा पकड़ कर बैठी हे साइड मे एक कार भी खड़ी हुई दिखाई दे रही --

-- और कुछ फोटोस भी रखें हुए लगे हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर एक विंडो दिखाई दे रही हैं जो की वाइट कलर की दिखाई दे रही हैं जो की काफी बड़ी नजर आ रही हैं।

--भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर एक दिया जलता हुआ नजर आ रहा--

ऊपर बहुत सारे पत्थर भी पड़े हुए दिखाईं दे रहे है जिनमें कुछ पत्थर छोटे और कुछ पत्थर बड़े है।

और यहाँ पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक समुंदर नजर आ रहा है।

जिनमें कुछ पेड़ छोटे और कुछ पेड़ बड़े दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं जिनमें कुछ घर बड़े और कुछ घर छोटे दिखाई दे रहे--